सरोजनी हॉस्पिटल हेय | डॉक्टर नाम बालमुकुंद झा हेय | दू गो साइकिल लगल हेय | दू गो मोटर-साइकिल लगा हेय | एक आदमी हेय | पोस्टर हेय।

कलर से रंगल हेय ।

पहाड़ हेय | तीनगो आदमी हेय | लगा ह पिकनिक मनाबे ले जाय ह |